एयरपोर्ट के सामने एक आदमी नीला शर्ट पहन के कर खड़ा है |

यह एक इंजीनियर है जो किसी जगह पर कुछ पत्थर का नाप तोल कर रहा हैं।

इसपर एक बहुत मजबूत और टिकाऊ ब्रिज भी दिखाई दे रहा है जो देखने में बहुत लम्बा हैं।

यह एक मैरिज हॉल है।

मछलियों को खाने से हमारी आंख की रौशनी बढ़ --